दो-तीन दुकान है एक छत्ता वाला ताने हुआ है।

बत शायद यहां मैच हो हो रहा है जिसको देखने के लिए बहुत सारे भीड़ लगे हुए चारो तरफ से लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हैं और इस जगह एक पेड़ भी हैं पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं।

यहां बहुत सारे दुकान है।

आ बाहरो का फ्लोर जो है वो हरा कलर का है मकान है लाल रंग के एक रूम है जिसमें आदमी --

डिब्बा सब रखा हुआ है एक लड़का पीछे की तरफ --

अपना हाथ में किताब ले करके प्राथना कर रहा है कैंडल जला कर के अ और प्राथना कर रहा है अपने --

नहीं लग रहा है। कौनों देवता वेवता का स्थापित --